और यहां पे बहुत सारे पेड़ भी हैं ग्रीन कलर में। और यहाँ पे नीचे छोटी-छोटी घांस भी है जिसका कलर भी ग्रीन है। और यहां साइड में एक बोर्ड भी है।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर संभव मेडिकल हाॅल लिखा हुआ है और सामने दो गेट भी दिखाई दे रहे हैं और सामने कुछ लोग भी बैठे हुए हैं।

यहां पे सामने कुछ शॉप हैं और यहां पे सामने से बादल दिखाई दे रहे हैं| और यहां पे कुछ पेड़ भी है ग्रीन कलर में |

और यहाँ सामने से दूर-दूर तक पेड़ ही नजर आ रहे हैं और यहाँ सामने वाइट कलर में बादल भी दिख रहे हैं।